यह बहुत बड़ा प्लांट है। नया प्लांट है। इसमें मिट्टी से काफी ज्यादा ऊँचाई पे है।

इसमें योगदान मजदूरों को ज्यादा है।

ये मोटर गाड़ी है यहाँ मोटरो का काम चलता है।